यहां पर एक कोयल भी है और--

ये औरत ब्यूटी पार्लर का मालकिन है।

ये ये बिल्डिंग शायद स्कूल का होगा कोई--

यहाँ पर हम देख सकते है ये रिपब्लिक डे के लिए स्कूल में फंक्शन हो रहा है।

उसके सामने में एक नदी है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और साफ है।

एम_एस एस_डी एंटरप्राइज । यह एक इंटरप्राइज है।

आह हाफ कोट भी पहना है और चेक टी-शर्ट पहना है।

यहां पे अनुपम का ट्यूबलाइट भी है।

के नीचे बहुत सारा कुर्सियां रखा गया है।

यहां पे एक आदमी वेटिंग एरिया में रुका हुआ है।

इसे हाथों से बनाया गया हैंडमेड ट्रेडीशनल होम्स हैं।